यह एक सैलून का दुकान है जो नया खुला हुआ है जिसमें डेकोरेशन के लिए फूल और गुब्बारे लगाए हुए हैं एक व्यक्ति अपनी स कटींग कराने के लिए बैठा है और दो व्यक्ति इंतजार कर रहें हैं।

और कुछ पेड़-पोधे भी दिख रहे हैं और साथ ही रोड के जस्ट बगल में एक तालाब भी नजर आ रहा है।

यह एक चर्च की तस्वीर है जहा पर पांच व्यक्ति और दो महिला खड़े है पीछे में इशू मसीह की तस्वीर है और प्लस का सिग्नेचर है।

यह एक अस्पताल की तस्वीर है जहा एक व्यक्ति बेड पर लेटा हुआ है जिसका सिर सामने की तरफ है अपने पीठ पर वो कंबल और तौलिया रखे हुए है।